इसकी जो बाउंड्री है वे है काले रंग की हैं और जो बीच में जो सीमेंट का पार्ट हैं वे सीमेंट का ही है और जो पेड़ है वे है हरे रंग के थोडे शोव के भी पेड़ हैं थोड़े छोटे से पौधे हैं वो भी हरे रंग के है।

नीले रंग का शर्ट पहन कर ओर जो आदमी सफ़ेद रंग का शर्ट पहन कर है और तीन आदमी वह खड़े है वहा नीचे देख रहे है खड़े में।

मैदान है इस मैदान में खेल रहे है लोग और थोड़े लोग चक्कर काट रहे हैं वॉक कर रहे हैं सुबह का वक्त है।

एक वाटर पार्क है यहाँ पर एक रिंग्स सी बनी हुई है नीचे से नीले रंग की टाइल्स है बाकि सभी हरे रंग की टाइल्स बत्तक का मुँह सा खुला है।

इसमें मूर्ति भी रखी हुई है अन्दर से और जो म्युसियम है वह सफ़ेद रंग का है और यह जो चीजें हैं वह कांच के अन्दर रखी गई है और इनकी जो जानकारी है बह बाहर है निचे रखी गई हैं।